यहाँ हमको एक ये टेंट तना हुआ दिख रहा है जो पीले कलर का है इसमें नीचे बहुत सी कुर्सियाँ --

डली हुई है जो पीले कलर की है और चारों तरफ सफेद टेंट लगा हुआ है।

उम्म बैठा हुआ है और उ एक खड़ा हुआ है जो कुछ बात कर रहा है ऊपर छत पर एक --

पंखा दिख रहा है पीछे दुवाल पर रंगीन गुब्बारे --

ईंटों के कुछ ढेर दिख रहे हैं और बहुत सारे खंबे --

ई मशीनें रखी हुई है और ऊपर काले पोस्टर लगे हुए हैं ऐऐ जिसमेंऐंऐं वूमि --

टेबल लिखा हुआ है और आदमी और के बॉडी के चित्र छपे हुए हैं और साइड में दीवाल पीले कलर की है जिसपे काले --

अं मूर्ति की डिजाइन बनी है जो कुछ अ ग्रीन और--

यहाँ हमको बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत सी काली --

हम्म तार लगे हैं और रव रेल के उस साइड ऊँचा पहाड़ दिख रहा है जिस पर हरे --

मशीनें रखी हुई है और ऊपर छत में नील हरी लाइट --

उम् टैंकर दिख रहा है नीचे कुछ सामान और ड्रम दिख रही हैं ऊपर नीला सफेद आसमान दिख रहा --

घास भी पीले कलर की दिख रही है और कुछ दो हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊंचे पत्थरों के --

कलर से कुछ कुछ लिखा हुआ है कुछ दिल बने हुए हैं।

प्लास्टिक की ट्रे दिखाई दे रही हैं जो कुछ सफेद कुछ काली--

यहाँ हमको सड़क दिख रही है जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है और सामने एक --

हैं ब्रिज की रेलिंग दिख रही है और रिक्शा है सामने एक महिला एक आदमी आ रही है जो दोनों बैग को --

यहां हमको एक आदमी दिख रहा है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक महिला--

डॉक्टर खड़ी हुई है जिसके हाथ में ग्लव्स हैं जो एक मशीन को आदमी के मुँह पर कर रही है और उम्म्म सफ़ेद --

और साइड में पेट्रोल टैंक दिख रहा है घर के ऊपर बहुत सारी सोलर पैनल लगी हुई हैं और साइड में --

यहाँ हमको एक बिल्डिंग दिख रही है जो पीले कलर की है जिसके बाहर बहुत से --

सीढ़ी लगी हुई हैं और टेबल बेंच बनी हुई हैं जो कथाई--

सफेद कलर की लगी हुई है और सामने बड़े बड़े दो पेड़ दिख रहे हैं।

और पीछे दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं और दोनों साइड एक साइड संग --

नीली दिखाई दे रही है और जाली के ओस --

खुली हुई है और ऊपर रेलिंग बनी है। ऊपर--

अअअ हरा सफेद आसमान दिखाई दे रहा है नीचे एक सफेद पोस्टर लगा हुआ है जिस पर--

यहाँ हमको दीवाल दिख रही है जो चॉकलेटी कलर की है जिसमें रै --

रखी हुई हैं और ऊपर बोटल रखी हुई है शैंपू की --

और दो गुब्बारे दिख रहे हैं एक पीला एक ऑरेंज कलर का है और कुछ --

पीले फूलों की अम्म झालर लग अअ लटकन लगी हुई हैं और दोनों साइड बलब --

यहाँ हमको एक छत दिख रही है जिस पर लोहा बिछा --

हुआ है और नीचे सेंटिंग लगी हुई है जिसमें पटिए लगे हुए हैं।

सफेद टंकी दिख रही है पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर--

नीले कथाई कलर के फू फू पत्तियाँ बनी हुई हैं।

सफेद दिख रहा है पीछे दीवार पिंक कलर की--

अ छत सफेद और कुछ पिंक और कहीं ग्रीन दिख रही है और सामने एक खंभा है जो ऊपर सफेद नीचे--

यहाँ हमको एक बिल्डिंग दिख रही है जो कथाई कलर की है जिसके ऊपर ओम --

हुंहुं बना हुआ है और बीच में नीले काँच का गे खिड़की लगी हुई है और नीचे --

राधेय राधे कृष्णा फूड फेयर लिखा हुआ हैं नीचे कांच का गेट है।

यहाँ हमको एक मंदिर दिख रहा है जो ब्लैक एंड वाइट --

कहीं हरा कहीं ऑरेंज दिख रहा है और बाहर एक लोहे का बड़ा--

गेट लगा हुआ है जो हरा और ऑरेंज दिख रहा है जिस पर साइड में एक--

पोस्टर लगा है जिस पर गेट नंबर चार लिखा हुआ है और सामने दो आदमी--

यहाँ हमको एक दीवार दिख रही है जिस पर बहुत सारे काँच --